तस्वीर में पेट्रोल पंप दिख रहा है।

ढेर सारे चार चक्का गाड़ी लगा हुआ दिख रहा है।

एक छोटा बच्चा दिख रहा है।

फूल पूरा भरा हुआ है घर दिख रहा है।

पेड़ दिख रहा है पानी के बीच पास दिख रहा है।

अगल-बगल पौधा दिख रहा है।

छोटे-छोटे पेड़-पौधा दिख रहा है।

सामने घर दिख रहा है।

दो-तीन आदमी दिख रहा है।

दोनों साइड देवाल पर बोर्ड दिख रहा है।

तस्वीर में सामने घर दिख रहा है।

फिरकी छोटा-छोटा दिख रहा है।

दोनों साइड पौधा दिख रहा है।

रोड दिख रहे हैं लंबा--

तस्वीर में घर दिख रहा है।

सामान ढेर सारे दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

छोटा-छोटा ढ़ेर सारे घर दिख रहा है रोड दिख रहा है।

पानी ढेर सारा दिख रहा है।

पानी में छोटा-छोटा नाव दे रहा है।

सामान नीचे भी दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

छोटा-छोटा छड़ दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है।

झुमर लटकाया हुआ दिख रहा है।

नीचे छोटे-छोटे गमला में पौधा दिख रहा है।

पेंट करा हुआ पेयर दिख रहा है रंग बिरंग --

तस्वीर में घर दिख रहा है।

हरा डायनासोर दिख रहा है।

घेरा हुआ दीवाल दिख रहा है।

चार चक्का गाड़ी दिख रहा है।

जमीन दिख रहा है घर दिख--

दो गिटार दिख रहा है।

कंप्यूटर दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

कपड़ा पसारा हुआ दिख रहा है।

ऊपर ब्लू आसमान दिख रहा है।

छोटा-छोटा घास दिख रहा है।

पार्दा धेर सारा दिख रहा है लटकाया हुआ--

ग्रे कलर का दिख रहा है।

लिखा हुआ दिखा है लेकिन पूरा बथल--

मोंडरी में छोटा-छोटा पौधा दिख रहा है।

आदमी दिख रहा है बैठा हुआ--

तस्वीर में घर दिख रहा है छोटा-छोटा खिड़की दिख रहा है।

गेट दिख रहा है दो-तीन गाड़ी दिख रहा है।

खिड़की में शीशा लगा हुआ दिख रहा है अगल-बगल घर दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

छोटा-छोटा फूल दिख रहा है पीला में--

तस्वीर में घर दिख रहा हैं।

ऊपर तस्वीर दिख रहे हैं।

ऊपर आसमान दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

सामान रखा टेबल पर दिख रहा है।

फ़ाईबर का गेट दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

जय माला का पूरा सामान दिख रहा है।

बगल में ढेर सारे फूल दिख रहा है।

ऊपर दौड़ा लिए वो दिख रहा है।

अगल-बगल घर दिख रहा है।

आदमी दिख रहा है।

टेबुल दिख रहा है कुर्सी दिख रहा है।

टेबल दिख रहा है लड़का बैठा हुआ दिख रहा है।

ढेर सारे सामान दिख रहा है।

ढेर सारे आदमी दिख रहा है।

छोटा-छोटा कागज का टुकड़ा जमीन पर दिख रहा है।

ढेर सारे हाथमी दिख रहा है लाइट --

अगल-बगल पर पौधे दिख रहा है।

आसमान ब्लू दिख रहा है सामने पीला मकान दिख रहा है।

पेड़ दिख रहा है दो गाड़ी दिख रहा है।

गाड़ी लगाया हुआ दिख रहा है।

दो बांस दिख रहा है।

हरे भरे पेड़ पौधा दिख रहा है।

डॉट दिख रहा है ट्रक दिख रहा है।

तस्वीर में रोड दिख रहा है दो तीन गाड़ी दिख रहा है।

अगल बगल ढेर सारे आदमी दिख रहे हैं।

एस_ये दिख रहा है नीचे बेड दिख रहा है।

मशीन दिख रहा है ऑक्सीजन लगा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में फील्ड देख रहे हैं।

पोल दिख रहा लोहा का पोस्टर दिख रहा है।

टंकी दिख रहा है काला में ऊपर आसमान दिख रहा है अगल-बगल--

राजस्थान लिखा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

अगल-बगल ढेर सारे सामान दिख रहा है डिज़ाइन दिख रहा है।

बड़ा-बड़ा पेड़ दिख रहा है।

ढेर सारे हरे पत्ते दिख रहे हैं।

सामने गेट दिख रहा है।

ऑरेंज फूल के माला लटकाया दिख रहा है दुकान दिख रहा है नारायण भंडार लिखा हुआ दिख रहा है।

लड़की दिख रही है झंडा लगाए हुए पीठ में।

मैट दिख रहा है रंग बरंगे नीचे घास जमा हुआ है।

तस्वीर में घर दिख रहा है घर में ढेर सारे समान दिख रहा हैं।

ढेर सारे सामान दिख रहा है लाइट बर रहा है।